यहा बहुत सारे विद्यार्थी है जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे है यहा सेंचुरी पेपर पर कागज और कलरफुल कागज यहाँ रखे हुए है उन्होंने स्कूल की ड्रेस पहनी है।

काफी सारे लोग यहा पे देख रहे है आनंद ले रहे है और जो आसमान दिखाई दे रहा है जो काले कलर का रात का समय--

उपर मुझे आसमान दिखाई दे रहा है नीले कलर का और यहा पे काफी सारे हरे पेड़ लगे है पीछे स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफ़ेद है।

पेपर है और कुछ काम बचे है असपे अपना काम कर रहे है कुछ पिंक कलर दिख रहे है और काफी कुछ देखने को मिल रहे है। --

यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक है जो की कोई बाहर यहाँ काट रहे है और पीछे बैठा हुआ और मुझे दिखाई दे रहे है और पीछे एक आदमी जा रहे है इस ने मास्क पहना है।

यहा कुछ पत्ते भी दिख रहे है कुछ गमले है और यहा पर दीवार पे लाल कलर किया गया है और यहा मैडम खड़ी हुई है और पीछे मुझे पीले कलर की दीवार भी दिख रही है।

तीन मजदूर मुझे दिखाई दे रहे है एक ट्रक है और ये सफ़ेद पीली बोरियोको अंदर ट्रक मे जमा रहे है और ऐ एक दिनका समय है उछल रहा है रुको मुझे दिखाई दे रहे है।

यहा निचे कुछ खड्डा दिख रहे है पिछे पहाड़ दिख रहे है कुछ पेड़ मुझे दिखाई दे रहे है कुछ और कुछ नीला आसमान मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है यहा पे हेलोजन लाइट लगी--